बच्चे झूले ले रहे हैं।

पूल में बच्चे नहा--

यहां सारे डॉक्टर इकट्ठे बैठे हैं।

काफी विकश खड़े हैं।

कारें बसें मोटरसाइकिल जीपें ।

ओ है और ऑफिस में लैपटॉप भी--

चौंक है नाई की दुकान का गेट बन्द है।

यह जिम की तस्वीर है।

वे हैं जिम में ऐ_सी --

पड़े हैं शॉप में टॉयज भी पड़े हैं टॉयज --

लड़के ने व्हाइट शर्ट --

पड़े हैं पीछे दिवार पे चार--